अ घर का रंग है नीला और यहां पे बहुत सारे आदमी आए हुए है और कुछ आदमी बाहर मे भी खड़े है।

और यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी रखते है बाघ शेर चिता और भी --

डायल इन मोबाइल फोन टी.वी. एण्ड --

और यह ब्लॉक बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे थोड़े दिन ही पेहले पेंटिंग किए है और यहाँ अभी तक काम चलते है।

यहाँ बहुत ही बड़ा स्कूल है यहीं पे सभी बच्चे का सेंटर पड़ा था और यह सभी बच्चे सरकारी स्कूल के हैं और यहाँ पे बहोत सारे छात्र के गार्जियन आए हुए हैं लेने ।